अ मम्म थोड़ा सा अंधेरा सा दिख रहा है बाहर की तरफ एक आदमी खड़ा है वहाँ पे--

और दूसरी तरफ भी एक बैनर लगा हुआ है उस वहाँ पे लाइट चालू की हुई है एक लाइट का फोकस दिख रहा है दो-- वो बैनर लगाए हुये है वहाँ पे।

यहाँ पे भी कैफे दिख रहा है उसका बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे चेयर दिख रही है कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं।

लाइट चालू हैं वहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ दिख रहा हैं फूलों से सजाया दिख रहा हैं हरे-हरे कलर के पर्दे दिख रहे हैं लाइट के फोकस में--

बड़े-बड़े पत्थर दिख रहे है कुछ छोटे भी दिख रहे है अउ पर बदक दिख रहा है लोहे-लोहे का पुल जैसा कुछ बना हुआ है उस पर अअअ पुतले बने है।

काले कलर की गाय दिख रही है और गाय के पीछे एक आदमी खड़ा दिख रहा है वहाँ पे एक घर दिख रहा है दरवाजा दिख रहा है एक औरत --

ये जिमस दिख रही है जिमस में कुछ लोग खड़े दिख रहे है कुछ अ-वहाँ पर लाइट भी बिछी हुई दिख रही है एक लड़के के हाथ में एक मोबाईल दिख रहा है।

और एक आदमी बाहर की तरफ बैठा हुआ नज़र आ रहा है और एक शॉप के अंदर बैठा हुआ नज़र आ रहा है उसमें रैक में कुछ किताबे रखी हुई दिख रही है और उस शॉप का बाहर बोर्ड लगा हुआ है बाहर से कुछ सीढ़िया बनी है ऊपर चढने के लिए --